और कुछ बच्चों ने नहीं इनका यूनिफॉर्म रेड कलर है और टाई ब्लैक कलर की।

यह एक हेयर सॉल्यूशन है जहाँ पे --